यह एक पेट्रोल पम्प है। पेट्रोल पम्प के इस साइड एक दुकान है जहाँ आगे गाड़ियाँ लगी हुई है। चार कुर्सी लगी हुई है। पेट्रोल पम्प पर हमलोग तेल भरवाने जाते हैं।

यह एक लड़की है। यहाँ पर चारों तरफ़ पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

जमीन टाइल्स लगी हुई हैं।